पानी दिख रहा है बहता हुआ पानी और लाइट्स दिख रही है।

ये हॉलहै इस हॉल में सोफासेट रखा हुआ है। टेबल रखाहुआहै

ये एक होटल है होटल में टेबल कुरसी लगे हुए है।

पार्ट्स अवे आदमी ओरटे खड़ी हुई है लाइट लगी हुई है।

लेडी जीन्स देख रही है कपडे कबड़ में कपडे रखे हुए है और पर यहाँफेन है।

अभिम्नानादन करती है और यहाँ पर लोग घूम रहे है चलते जा रहे है बच्चो के खिलोने दिख रहे है गाडिया दिख रही है।

एक टेबल है टेबल पर चार प्लेट्स है एक बाउल है।

एक डिश है डिश मे तीन चार वराइटीज की--

ये एक एंटरंस है एंटरंस मे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है।

टेबल पर ग्लास है बॉटल है दो आदमी बात कर रहे है और बलूने से सजा हुआ हॉटेल है।

जैसे झूला है घसरगुंडी है और घोडा घोडा है राउन्ड झूला है और यहाँ पे पेरेंट्स बच्चो को लेके आए हुए है।

ये कॅम्पस दिख रहा है यहाँ पे ईटों से बना हुआ कॅम्पस है।

तो यहाँ सामने उन्हे कोई सीखाने के लिए ट्रेनर है फॅन दिख रहा है व्हाइट कलर का पेंटिंग करा हुआ है कलरफुल मॅट है।

यहाँ पर डोर दिख रहा है बहुत सारी चेयर है।

इसके बाजू मे महावीर सनसे पटना है संचारित ये भी लिखा हुआ है रास्ता है।

मिट्टी है इन लोगों की चप्पल दिख रही है झाड है बादल है।

और ये जिम क्लासेस है जिम क्लास मे ना सारे जो जिम करने वाले ट्वील्स होते है ना--

टेबल पर बॉटल रखी हुई है लाइट लॅंप्स है।